यह एक पहाड़ है जहाँ पे बहुत सारे लोग घुमने आते है और यहाँ पे एक कपल घुमने आए है ।

यहाँ एक आदमी अपना इंटरव्यूज कर रहा है और यहाँ पे दो आदमी --

यहाँ एक ई स्कूटी है और या स्कूटी घर में खड़ा किया गया है और ए स्कूटी बहुत ही अच्छा है और ए स्कूटी बहुत अच्छे से चलता है और यह स्कूटी का कीमत भी अच्छा है।